पीछे में बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब बनाया होके है।

ये रूम में देखने के लिए चिल्ड सब भी लगा के है।

नीचे के हाथ में बहोत सारा ग्लास सब भी पकड़ के है।

टेबल के ऊपर एक ले लैपटॉप भी रखे हैं।

सामने में टेबल भी रखाया हुआ है टेबल के ऊपर लैपटॉप भी रखे हैं।

ये ग्राउंड में बहुत सारा इंसान लोग योगा कर के रही है।

बड़ा बड़ा बिल्डिंग सब भी बनाया हुआ है।

पीछे में बड़ा बड़ा समुंदर सब भी है और छोटा छोटा घास सब भी हैं।

पीछे में भरा भरा पेड़ सब भी है।

सामने मे बहोत सारा मूर्तियां सब भी रख--

मनुष्य भी खड़ा हो के है। एक औरत के सामने में एक पेन भी रखे है।

इस फोटो में मुझे एक बड़ा सा रूम दिख रही है।

ई रूम को व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

ये फोटो में मुझे बड़ा सा जंगल दिख रही है।

नीचे में छोटा छोटा घास सब भी रखे हैं।

तीन ठो टेबल भी रखे हैं। टेबल के ऊपर टिशु और फ्लावर पोट सब भी रखे --

सामने में एक प्लॉवर पॉट भी रखे हैं।

इसी के ऊपर एक बकेट भी देख रही है।

सामने में बहुत सारा मनुष्य सब भी है।

फोटो में मुझे ब्लू फिल्म दिख रही है ये रूम को व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है।

सामने में बड़ा सा टावर भी लगाया हुआ है।

पीछे मे बड़ा बड़ा पेड़ पौधे सब भी लगाया हुआ है।

ये फोटो में मुझे बड़ा सा बिल्डिंग दिख रही है।

जो कि एलो कलर से पेंट किया हुआ है।

टीना के सामने एक लाइट बल्ब भी लगा के है।

ये फोटो में मुझे एक घर दिख रही है।

सामने में बेंबू सब भी लगाके है।